ये कोई त्यौहार है यहाँ पे बाराती यहाँ पे फंक्शन हो रहा है बहुत सारे लोग ढोलक बजा रहे हैं बहुत सारे बच्चे भी हैं लड़के भी हैं बूढ़े भी हैं औरतें भी हैं लड़की भी है सभी लोग ढोल बजा रहे हैं बहुत सारे लोग देख रहे हैं ।

उउ पत्थर के बीचो-बीच गुफा बना हुआ है।